ये नजारा तो बहुत अच्छा है इंसान कहा है पता नही ये पहाड़ी क्षेत्र लग रहा है और यहां अगल बगल में कही भी लोग दिखाई नहीं दे रहा है और एक लड़के है वे कौन है पता नही टी-शर्ट मैं है!

खिड़की --

और यहां पर कोई यहां पर नजर नहीं आ रहा है लेकिन बात --

ये वैसे-तैसे कर के भी कुछ काट रहा है अच्छा ही ऐसे बना रहा है।

और कुर्सी लगे हुए हैं आदमी देख रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं।

और गट लगाए हुआ है रोड के पहिले मिनट से--